यहाँ एक प्लेट नज़र आ रही है और प्लेट मे चावल दिखाई दे रहे है चावल का रंग सफ़ेद है ककड़ी नज़र आ रहे है ककड़ी का रंग हरा है प्याज दिखाई दे रहा है कटोरी मै सब्जी दिखाई दे रही है।

दिवार का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है और ऊपर छत में एक पंखा नज़र--

पेड़ नजर आ रहा है। पेड़ो का रंग हरा दिखाई दे रहा है। बिल्डिंग का रंग भी सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक सड़क नज़र आ रही है सड़क पे गाड़ी दिखाई दे रही है गाड़ी का रंग सफ़ेद नज़र आ रहा है ऊपर आसमान नज़र आ रहा है आसमान का रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है आसपास--

यहाँ एक मेर्रिज गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे लाइटे नज़र आ रही है लाइटो का रंग नीला पीला नज़र आ रहा है आसपास --

आसपास पत्ता दिखाई दे रहा है पत्तो का रंग भूरा नज़र आ रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग भी सफ़ेद नज़र आ रहा है।

सफ़ेद नज़र आ रहा है नीचे सड़क दिखाई दे रही है सड़क का रंग भूरा नज़र आ रहा है आस-पास पेड़ दिखाई दे रहा है पेड़ो का रंग हरा नज़र आ रहा है।

यहाँ टाइल्स दिखाई दे रहा है टाइल्स का रंग सफ़ेद है।

पूल दिखाई दे रहा है जोकि लोहै का नजर आ रहा है उसका रंग सफ़ेद दिखाई दे रहा है उसकी जाले स्टील की नजर आ रही है एक शीट दिखाई दे रहा है जिसका रंग भूरा --